कपड़े रखे हुए हैं जैसे सूट साड़ी।

हाथ धोने की थूटी और भी बहुत सारे चीजें रखी हुई हैं यहां पे तार भी रखे हुए यहां पे पाइपें भी रखी हुई हैं यहां पे लाइट सीट भी है और यहां पे बहुत सारी चीजें हैं।

यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये पानी में खड़ी हुए हैं।

बहोत सारे गोल गोल बॉल भी है यहां पे बैलून भी लगाए गए है दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए एक बच्चा खड़ा हुआ है।

खिड़कियां भी है यहां पर एक लड़के ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई--

यहां पे चेयर यहां पे बहुत सारी--

चीजे रखी हुई है यहां पे बहुत सारी बॉटल रखी हुई है यहां पे बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

खड़ी हुई है खिड़की के आगे वहां पर लाइटे लगी हुई है।

टेंट है यहां पे बहोत सारी गाड़ी आ जा रही है।

यहां पर लेडिस खड़ी हुई है उसके हाथ में गुलाब का फूल है ऊपर एक झुमर लगा हुआ है।

ए_सी भी लगा हुआ लाइटिंग लगी हुई पंखा भी लगा हुआ है।

और यहां पे बहुत सारे लड़के भी हैं।

यहां पे एक डस्टबिन भी है जो पीले कलर का है।

उसमें बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई है।

ये एक कैफे की तस्वीर जिसका नाम है डी_सी_टी ।

ये एक कैफे की तस्वीर है मेज और कुर्सी लगाई गई बैठने के लिए मेज पर की बोतल रखी हुई है टिशू रखे हुए हैं मेनू रखा हुआ है।

यहां पे बाइक या स्कूटी खड़ी है यहां पे एक--

हेलमेट रखा हुआ है हाथ में एक आदमी बैठा हुआ है यहां पे सीढ़ियां भी लगी हुई है।

यहां पे दो आदमी बैठकर बात कर रहे हैं।

बहोत सारे दीवार लगी हुए हैं यहां पे कुछ पेड़ पौधे भी--

खुली हुई है यहां पे बिजले के खम्भे लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे आदमी और लेडीज बैठे हुए हैं।